दे रहे हैं यहां पर बहुत सारे ऑटो --

प्लेन एयर इंडिया का दिखाई--

वहीं कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है ढाबा ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारा पानी भी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारे शटर भी दिखाई दे रहे हैं।